लड़के के हाथ में हेलमेट है और लड़की के शोल्डर पे बैग है।

उस तरफ से और कंप्यूटर मॉनिटर भी है।

पीछे बहोत सारे लोग बैग्स ऊपर रखने में बिजी हैं और साइड में वेंस भी है।

इस फोटो में बहुत सारे लोग जिम कर रहे हैं।

फोटो में एक दुकान दिखा जा रहा है।

फोटो में एक इनोवा क्रिस्टा है।

फोटो में एक गार्डनर पानी दे रही है।

इस फोटो में एक आदमी कुछ लेकर दुल्हन के पास जा रहा है।

पीछे एक छोटा बच्चा पगडी पहन के कहीं देख रहा है।

एक एक्स्ट्रा मॉनिटर है साइड में विंडो है।